और यहाँ पर कुछ पेड़ वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर व्हाइट कलर की जाली भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक व्हाइट कलर की लाइट भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर ब्लू कलर की चादर भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक घड़ी लगी है वो भी यहाँ पर दिखाई रही है दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बिल्डिंग दिख रही हैं जहां पर दो खिड़कियां दिख रही हैं और वहां पर एक बैंक का बोर्ड दिख रहा है जो की ब्लू कलर का दिख रहा हैं और --

यहां पर एक झूला दिखाई दे रहा है जहां की बहोत सारे लोग उस पर बेठे हुए है और यहां पर झूल रहे हैं और यहां पर झूला चेन से और झूले की चेन भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक पुल दिखाई दे रहा है की जो बहुत बड़ा पुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और बिल्डिंग के ऊपर यहां पर लोगों के कपड़े वगेरा भी दिखाई दे रहे हैं जो की डले हुए हैं और यहां पर पार्किंग में बहुत सी बाइक वगेरा भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बोर्ड दिख रहा है जिसपे कुछ रेड कलर से लिखा हुआ है वहाँ पर एक पिक्चर भी वहाँ पर दिखाई दे रही ओ सामने एक ब्लू कलर की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बोर्ड दिख रहा है जहां पर ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है| जहां पर रेड और ब्लू से यहां पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है और यहां पर कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो नए कपड़े पहने हुए दि--